जिसमें कई ईंटें बिखरी हुई हैंलकड़ी के--

बंदर भी हैं कुछ लकड़ी का काम कर रहे हैं और एक आदमी बैठे हुए हैं।

बिलु कलर की मशीन भी है सफेद रंग की लाइट भी जल रही है और प्लास्टिक की टाइल भी टायर भी रखे हुए हैं।

तीन बच्चे मैं से एक बच्चे ने मास्क लगा रखा है एक बच्चा खड़ा हुआ है।

कई कार जा रही हैं कुछ--

और खेत में छोटी-छोटी घास और फसल लगी हुई है।

बो ब्लैक कलर की हैं महरूम कलर की हैं।

ये ब्लैक कलर की दिवाल है दिवाल पर--

नदी के पीछे भी झाड़ियाँ हैं पौधे लगे हुए हैं और पहाड़ भी हैं।

ये एक कैफे है जिस पर--

और आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं।

और कुछ मैदान है जहाँ पर हरी-हरी घास है और दिन का समय है।

एक नदी है। नदी के ऊपर नाव है। नाव में कई लोग बैठे हुए हैं।

और अंदर पोर्ट वगैरह का सामान है।

ग्रे कलर की ए_टी_एम मशीन है।

ए_टी_एम मशीन के पास एक डस्टबिन रखा है।

वहाँ रेड कलर की कार भी खड़ी हुई है एक आदमी भी है।

औ पंखा भी लगा हुआ है कुछ पर्दे हैं और कुछ कवर्स है।

कुछ टेबल है उसके ऊपर दीए रखे हुए हैं चीनी मिट्टी के उसके ऊपर कैंडल रखी हुई है।

मैदान हैजो घास्स से--

बिल्डिंग पर बोर्ड भी लगा हुआ है उसके नीचे--

और उसमें दो खंभे भी लगे हुए हैं।

तीन बड़े-बड़े चौकी रखी हुई है।

लाइट भी जल रही है ब्राउन कलर की टेबल है ब्लैक कलर की कुर्सी है टेबल के ऊपर लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है।

बबहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं।

ये एक दुकान है जिसमें बासबेसर से रखे हुए है।

येलो कलर की मसीन है लोहे की।

उसके ऊपर कई आदमी लोग हैं।

और हाथ में त्रिसूल लिए खड़ी हुई हैं।

ये एक दुकान है दुकान पर लकड़ी की टेबल है लकड़ी के स्टूल भी रखे हुए हैं।

एक चित्र में दो कार है एक ग्रे कलर की एक व्हाइट कलर की व्हाइट कलर की डिग्गी खोले हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और कुछ झूमर भी लगे हैं पंखे भी हैं ब्राउन कलर की बेंच भी है और ब्राउन कलर की टेबल भी रखी हुई है उसके ऊपर रजिस्टर --

और कई बच्चों ने लाइन लगा रखी है।

और बच्चों ने हरे रंग की एक ड्रेस पहनी हुई है।

एक्सरसाइज करते हुई नजर आ रहे हैं।

और कुछ छोटे पौधे हैं उसके पीछे ए-एक तालाब है।